और हाथी के पीछे एक आदमी पानी में से निकल रहे बहुत से आदमी उसको देख भी रहे है। हाथी के पीछे सिग है और बहुत से व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहां कुछ वृक्ष भी दिखाई दे रहे है बिजलिया भी लगी हुई है।